और लगता है बाहर एक ग्रस्त इलाका है ।

है उनके बछड़े भी हैं और उनके रहन सहन के लिए काफी अच्छी व्यवस्था की गई हुई है ऊपर में शेड लगा हुआ है एक पेड़ है जिसपे सीड़ी लगा हुआ है।